कलरिंग बर्ड्स देख पा रहे है।

आस पास हम कुछ घर देख पा रहे हैं और कुछ बड़े-बड़े पेड़ पौधे भी हम यहाँ पे देख पा रहें हैं इसके अलावा यहाँ पे रस्ते पे हम कुछ इलेक्ट्रिक पोल एंड तार भी देख पा रहें है।